ये एक नदी का पुल दिखाई दे रहा है।

पुल पर एक बाइक दिख दिख रहा है।

बहोत सारी शराब रखे हुए दिखाई दे रहे है बहोत सारी बोतले दिखाई दे रही है।

यहां कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक क्राफ्टिंग रूम दिखाई दे रहा है।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

कांच पे शादी कार्ड लिखा हुआ है।

दो लोग दिखाई दे रहे हैं जाते हुए।

ये एक मछली बाजार दिखाई दे रहा है।

ये एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

एक फिसल कुंडी दिखाई दे रही है।

यहां दो चार कारे दिखाई दे रही है।

आदमी के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है।

ये बहोत सारी दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही है।

एक औरत बैलून बेचते बेच रही दिखाई दे रही है।

के कुछ पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

फ्रूट की दुकान दिखाई दे रही है।

घर के बाहर एक कार खड़ी हुई है।

बहोत दो चार पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

ऑफिस में एक टेबल रखा हुआ है।

कूलर पे बहोत सारे होल्डर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

छोटे छोटे साइकिल लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

बाउंड्री पे काले कलर का गेट लगा दिखाई दे रहा है।